मैरिज गार्डन टाइप लग रहा है।

ऊपर की तरफ ग्रीन मैट लगी हुई है।

कुछ स्टील के गिलासों को एक के ऊपर एक जमाया गया है आकर्षित दिखने के लिए।